इस पिच्चर में हमे आसमान नजर आ रहा है | एक पेड़ नजर आ रहा है | एक बिल्डिंग नजर आ रही है | इसमें हमें एक बाइक नजर आ रही है | एक रिक्शा नजर आ रहा है | रिक्शे के पास एक आदमी खड़ा हुआ है एक साइकल नजर आ रही है।